यहाँ एक सड़क नजर आ रही है सड़क के पास एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का रंग सफेद नजर आ रहा है।

यहाँ एक सजा हुआ हॉल दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर गुब्बारों से सजा हुआ है गुब्बारों रंग लाल पीला दिखाई दे रहा है।

की ड्रेस पहनी है एक ने मास्क लगाया हुआ है मास्क का रंग नीला है।

सामने दीवार नजर आ रही है दीवार का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है ऊपर छत नजर आ रहा है छत पर लाइट लगी हुई है लाइट में --

एक पर्पल रंग का सीट से बना हुआ एक घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक मैरिज हॉल नजर आ रहा है जिस पर फूलों का सुंदर गेट सजा हुआ है। यहाँ दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे जमीन नजर आ रही है।

यहाँ एक सड़क नजर आ रही है जिस पर एक बस खड़ी हुई है बस का रंग सफेद दिखाई दे रहा है पीछे भी कुछ और --

इसके आगे एक और ऑटो जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसका रंग काला नजर --

ये बच्चे बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ कुछ पेंटिंग कर रहे हैं सभी बच्चों ने नीले रंग की ड्रेस पेहनी हुई है।

हरे रंग की दीवार नजर आ रही है बेंचेस लगी हुई है उनका रंग लाल नजर आ रहा है।

यहाँ एक मॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ कपड़े टांगे हुए नजर आ रहे हैं कुछ मूर्तियाँ दिखाई दे रही है।

कुछ रंग-बिरंगे कप और प्लास्टिक की एसेसरीज रखी हुई है।

पार्क में सुंदर-सुंदर पौधे लगे हुए हैं जिनके रंग हरे हल्के पीले नजर आ रहें।

सामने घास का मैदान दिखाई दे रहा है पीछे जो --

वहाँ पे सुंदर सी मोमबत्तियां दिखाई दे रही है लाइटें नजर आ रही है जिनके रंग लाल नजर आ रहे हैं य --

बच्चो ने नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है किसी ने सफेद ड्रेस पहनी हुई है किसी ने लाल पहनी हुई है ।

यहाँ एक मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ दो जने क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।